और ये कुछ-कुछ बहुत सारी चिड़िया है और यहाँ पर कबूतर भी है अउ बहुत ही खुबसूरत जगह हैअउ बहुत ही शानदार जगह है यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैउन लोग को पिंजड़ा में बंद किया गया हैं इन लोग को बेचते हैं।

--और यहाँ पर बहुत ही शानदार जगह हैं आप देख सकते है मॉल है इसमें हर चीज मिलता है टॉप जीन्स हर चीज मिलता है आप देख सकते हैं।

--खजूर का पेड़ है नारियल का पेड़ हैं और बहुत ही शानदार जगह है आप देख सकते है कितना शानदार जगह हैं।

हैलो गाइस यहाँ पे देख सकते है कितना शानदार जगह है बहुत ही शानदार जगह है और यहाँ पर नटबोल्ट है और यहाँ पर बहुत सारे नटबोल्ट है और यहाँ पर--

और यह ये टंकी में का है ये तो मालूम नहीं लेकिन बहुत ही शानदार जगह है आप देख सकते है कितना शानदार जगह है और यहाँ एकठो बैठा हुआ हैं।

हेलो गाइज आप यहाँ देख सकते है कितना अच्छा जगह है यहाँ पर बहुत सारी मूर्तिया है मूर्ति लगता है बेचा रहा है या--

और इसको गाने जैसे बजाय जाता है रिंग को और गाना भी गया जाता है देख सकते है यहाँ पर बजाने वाला ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा ही सा है।

--और यहाँ पे दुकान है चाय का यहाँ बेचा जाता है चाये और कुछ कुछ चीज भी बेचा जाता है नास्ता समोसा भजिया ये सब--

हेलो गाइस यहाँ पर देख सकते है ये हे मंडी मंडी में रखाया हुआ हे केला तरबूज--

बनाया गया है सब लकड़ी से बनाया गया हेे आप देख सकते हेे कितना शानदार जगह हेे यहाँ पर बहुत ही शानदार जगह हेेबहुत ही--

स्कूल में डांस कर रहे है बच्चे लोग लगता है और बहुत ही शानदार जगह यहाँ पे देख सकते है यहाँ पर डांस कर रहे है क्योंकि--